किसी थाना का सीन --

और वो लक्ष्मी जी का पूजा कर रहलक है लगता है दीपावली का समय --

ये सदर हस्पताल है गोपालगंज का।